यहाँ ज़ेबरा का तस्वीर बनाया हुआ है जी बहुत ऊँचे-ऊँचे पत्थर का ज़ेबरा का बनाया हुआ है यहाँ पे बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है आसमान नीना-नीना --